पीछे स्टेज पर बहुत सारी लाइट लगी हुई दिख रही हैं स्टेज पर काफी लोग खड़े हुए दिख रहे हैं और स्टेज को फूलों से सजाया गया है और स्टेज के बाहर --